एक जगह है जिसका फ्लोर का कलर क्रीम कलर का है यहाँ पे बहुत सारा डोर मेट पड़े हुए है कलरफूल ।

के ऊपर एक लैपटॉप रखा है और उसका माउस रखा हुआ है एक स्टेपलर रखा हुआ है एक टेलीफोन रखा हुआ है।

सड़क पर एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें साउंड और स्पीकर लगे हुए हैं गाड़ी सजी हुई है।

पौधे लगे हुए है और पत्थर के आस-पास छोटे-मोटे घास उगी हुई है।

जिसके आगे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने पिंक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई है।

यह एक बड़ी-सी जगह है यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित है कुछ महिलाएं है कुछ पुरुष है।

ब्राउन कलर का है बगल में बिजली का खंभा लगा हुआ है आसपास बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए है।

एक पुरुष और एक महिला खड़ी हुई है महिला ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है।

यह एक सड़क है सड़क पर एक दुकान बनी हुई है दुकान पर जो सीट रखी है उसका कलर --

यह एक जगह है जिसको व्हाइट कलर से कलर किया गया है बाहर के तरफ स्टैर्स बनी हुई है।

कुछ पुरुष हैं महिलायें ने साड़ी पहनी हुई है और दो महिलाओ ने ब्लू कलर की साड़ी और एक ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है।

कस्टमर ने ब्लू कलर का पहना हुआ है और बार्बर ने पिंक कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है।

और उसपे पिंक कलर का रिबन लगा हुआ है यहां पर एक --

यहां पर एक लड़का शर्ट प्रेस कर रहा है जिसने प्रिंटेड टी-शर्ट पहनी हुई है।

प्रेस की तार ब्लू कलर की है और शर्ट --